बाइक पार्क किया हुआ दिखाई दे रहा हैं।

रेड कलर के शर्ट पे पहनपहना हुआ।

सरक पे बाइक पे एक महिला एक पुरुष दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा हैसामने एक सीरी दिखाई दे रही है निचे चपल रखे हुए दिखाई दे रही है।

ये एक इंडियन आयल पेट्रोल पंप है जहाँ पे एक ट्रक दिखाई दे रहे है।

पिज़्ज़ा का शॉप बैलून दिखाई दे रही है डिफरेंट कलर्स की--

यहाँ युनि सेफ की बैनर लगे हुए दिखाई दे रहे।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

यहाँ ऑटो दिखाई दे रही है लैम्पोस दिखाई दे रही है।